एक कुँआ सा बन रहा है इसके बराबर में पेड़ झाड़ी खड़ी हुई है।

और यहां पर कुछ लाल कलर भी --

शीशा लगा हुआ है और जो किसी दूसरी भाषा में बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है और सामने डस्टबिन रखा हुआ है।

यहां पर कुछ बकरियां घास खाते दिख रही है।

और गेट लगा हुआ है साइड में झाड़ी भी दिखाई दे रही है।

सामने एक मशीन खड़ी हुई है।

खड़ी हुई हाइड्रोलिक मशीन --

ऊपर एक कुंडा भी लगा हुआ हैं तार दिखाई दे रही है।

जो घरों में बहोत अच्छे लगते हैं।

अमरान के सामने सामान रखा हुआ है डब्बों में।

और अंदर समान में अमरोन लिवगार्ड रखे हुए हैं।

और मशीन में लाल कलर की लाइट भी जली हुई है।

कुछ यहां पर पोलोथीने हैं कुछ पीछे बच्चों के कपड़े हैं लाइटें जल रही हैं।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

शीशा में शीशा लगा हुआ है और एक छतरी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर और स इधर फर्श भी हो रहा है।

इसमें ट्रैक्टर पर फूलों की माला लगी हुई है।

पास में एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है और कुछ कट्टे भी रखे हुए हैं।